रस्सी हो रस्सी में कपड़ा हो पेड़ पौधा हो आसमान हो।

जंगल झाड़ हो गुलाबी फुल हो व्यक्ति हो डिब्बा हो ।

जंगल झाड़ हो पहाड़ हो तार गाछ हो व्यक्ति हो।

लड़की लोग हो लाइट लगल हो घर हो पानी निकली रह ले हो।

बॉडी बनाए वाला हव।

पहाड़ हो लुहा हो जंगल झाड़ हो काम कर रह ले हो।